इस तस्वीर में मुझे एक एक्टिवा नजर आ रही है जो की मेन स्टैंड पे खड़ी हुई सामने की तरफ में चेयर रखी हुई है।

पानी दिखाई दे रहा है पहाड़ दिख रहा है।

सामने की तरफ में चेयर रखी हुई हैकाली।

राजा भोज की तसफो नजर आ रही है पानी नजर आ रहा है रेलिंग नजर आ रही है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैंलीली के कुछ दूरी पे मुझे एक खंबा नजर आ रहा है।

आटे की बोरी नज़र आ रही है एक पानी का टैंकर खड़ा है दरवाजा नज़र आ रहा है।

मुझे च चेयर नज़र आ रही है पाइप नज़र आ रहा है नीले रंग का वाटर कूलर नज़र आ रहा है।

पेड़ नजर आ रहे हैं आकाश नजर आ रहा है।

होटल जो पुता हैवह ब्राउन और येलो रंग से पुता हुआ है ओम का निशान बना है।

उसी के ठीक नीचे वोडाफोन का जिस पे बुक वर्ल्ड लिखा है।

जो कि सड़क पर खड़ी है शटर दिख रहा है उसमें पर्दा लगा हुआ है।

पीले रंग के दो तकिये डले हुए हैं सामने की तरफ में टी_वी है।

टशर्ट नीला पेंट पहना है हाथ में घड़ी बांधा है काली।

पेड़ नजर आ रहा है एक खंभा नजर आ रहा है।

गोकुल ढाबा लिखा हुआ है यह बैनर हरे रंग का है उसके ठीक नीचे एक नीले रंग का भी बैनर लगा है।

सामने की तरफ में एक दुकान दिख रही हैजिसमें फ्रिज है फ्रिज के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

सामने एक नीली शर्ट नीली जींस में आदमी खड़ा है।

इस फोटो में मुझे सड़क नज़र आ रही है जिस पे एक पाइप पड़ा हुआ हैसामने की तरफ में गिट्टी पड़ी हुई हैएक आदमी सर पे गिट्टी रखा हुआ है।

पीले कलर की एक बिल्डिंग नजर आ रही है सामने की तरफ में आकाश दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे अंदर की तरफ में बहुत सारे ऑयल की केंस नजर आ रही है।

कुछ बच्चे बैठे हुए हैंजो कि स्वेटर पहने हैं कुछ औरतें भी नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में मेरा पसंदीदा।

दो आदमी नज़र आ रहे हैं खिड़की नज़र आ रही है अंदर की तरफ में शटर के पास में लाइट जल रही है।

पेड़ नजर आ रहे हैं अंदर की तरफ बाउंड्री की उसमेंअशोक के पेड़ लगे हुए हैं।

प्यारा सा जंगल नजर आ रहा है मिट्टी दिख रही है मिट्टी में घास लगी हुई है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं जिसमें से एक लाल शर्ट पहना है एक पीली।

एक होडिंग लगा है अपना घर आश्रम भोपाल।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

का वॉलपेपर लगा हुआ है जिसका हरा रंग है पीला रंग।